यह एक रूम है रूम है जो रेड व्हाइट से पेंट किया हुआ है एक गेट भी है।

ऊपर पे तीन तिरा झंडा है जिसमें एक रेड एक हरा एक ब्लू कलर का है।

यहां पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

पीले कलर का पोस्टर है जिसमें एक जे_सी_बी एक कार एक लोजर है जो टाइल्स ढोने वाला रहता है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं पोल खंभे भी खींचा हुआ है उस पर तार भी खींचा हुआ एक सोलर पैनल वाला लाइट भी लगाया हुआ है।

नीचे पीलर भी पेंट किया हुआ जो रेड कलर से पेंट किया हुआ है एक पोस्टर भी लगाया गया है ऊपर पे बहुत सारे तार भी खींचा हुआ है एक से दो झंडे भी है।

पोस्टर भी है जिसमें लिखा है जपला ऊपर पे बहोत सारे पोल खंबे भी खींचा हुआ है उस पे तार भी खींचा हुआ है।

एक टेंपो भी है जो रेड कलर से पेंट किया हुआ है ऊपर पर ब्लैक कलर का है एपे बहुत सारे बाइक भी है।

यह एक शीशे का टेबुल बनाया हुआ है जिसमें चार प्लेट रखा हुआ है प्लेट का रंग व्हाइट कलर का है।

बजरंगबली पे म माला भी चघाया हुआ है जो गेंदा का होता हैं पर्दा भी लगाया गया हैं जो रेड व्हाइट का है।

यह एक हॉल है हॉल है जो वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।